चित्र में मुझे कुछ छोटी छोटी बरनी रखी हुई दिख रही है और चित्र में मुझे तराजू दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे क्रिश्चियन का मंदिर सा दिख रहा है।

और ग्रीन ग्रीन घास दिख रही है चित्र में मुझे लकड़ी रखी हुई दिख रही है चित्र में मुझे लोहे के पाइप दिख रहे--

और बेसिन भी कहि प्रकार की दिख रही है अलग-अलग कलर दिख रहा है टॉयलेट सीट सफेद कलर दिख रही --

चित्र में मुझे झरना दिख रहा है चित्र में मुझे झरने से आता हुआ पानी दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक आदमी बैठा केबिन पे दिख रहा है स्कैनर दिख रहा है।